काफी खूबसूरत नज़ारा है और यहाँ पर लोगों की भीड़ भी काफी जयादा लग रही है अंदर दिखने देखने मिल रहे हैं | काफी लाइटे लगी है इसमें और ब्लू कलर की पट्टी डेकोरेशन है और साइड में गमले लगे हुई हैं अच्छे खासे।

ये एक एयरपोर्ट का नज़ारा लग रहा है जिसके बराबर में दो-तीन एरोप्लेन खड़े हुए हैं। साइड में बिल्डिंग बनी हुई है काफी अच्छी तरीके की।

बेहद ही खूबसूरत यह नजरा देखने को मिल रहा है जो की एक शादी फंक्शन का है एक स्टेज सजी है दूल्हा दुल्हन के लिए।

अ साइडों से अ काफी अच्छी कुर्सियों की डेकोरशन हो रखी है। बोहोत ही खूबसूरत नजारा यहाँ देखने को मिला रहा है शादी फंक्शन के लिए।

ये एक स्विफ्ट कार है जोकि वॉश होने के लिए आई है जिसे एक लड़का धूल रहा है। एक लड़का आगे स्कॉर्पियो धो रहा है।

हॉकी का स्टेडियम है जिसमे ब्लू कलर की मैट बिछी हैं आई थिंक और बिच में वाईट पट्टी भी है।

कितना गंदगी यहाँ बड़ी हुई है| बदबू आ रही है छी |